ये ट्यूटोरियल्स ब्लेंडर 259 के साथ शुरूआत करने और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ब्लेंडर 259 को संस्थापित करने और रन करने के बारे में हैं
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाजद्वारा दी गई है
अपने इंटरनेट ब्राउजर को खोलें
मैं फायरफॉक्स 309 का उपयोग कर रहा हूँ
एड्रेस बार में टाइप करें wwwblenderorg और एंटर दबाएँ
यह आपको ब्लेंडर की ऑफिसियल वेबसाइट पर ले जायेगा
ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है
ब्लेंडर वेबसाइट से लाउनलोड करने के लिए इंस्टॉलर या सोर्स कोड उपलब्ध है
यहाँ पेज के हैडर के नीचे दायीं ओर डाउनलोड ब्लेंडर लिंक है
डाउनलोड पेज पर जाने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे
जैसा आप देख सकते हैं यह ब्लेंडर का नवीनतम वर्जन है
आपके पास यहाँ दो ऑप्शन्स हैं 32 बिट या 64 बिट इंस्टॉलर
आप अपनी मशीन के अनुसार किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं
32 बिट और 64 बिट सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए ब्लेंडर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर हमारे ट्यूटोरियल को देखें
वेबसाइट ब्लेंडर प्रोग्राम फाइल्स के जिप्ड आर्काइव भी प्रदान करती है
ब्लेंडर को रन करने के लिए आवश्यक सभी फाइल्स इस आर्काइव में हैं
आपको अपने फोल्डर में फाइल्स को अनजिप और एक्सट्रैक्ट करना होगा और ब्लेंडर को एक्जीक्यूटेबल रन करें
मैं समझाता हूँ
इंस्टॉलर और आर्काइव के मध्य मुख्य भिन्नता यह है कि इंस्टॉलर ब्लेंडर एप्लिकेशन फाइल्स को सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में रखता है और स्टार्ट मेन्यू में डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप पर एक आइकन और ब्लेंडर के साथ ओपन्स blend फाइल्स एक आइकन सेटअप करता है
जबकि ज़िप आर्काइव में सब एप्लिकेशन फाइल्स और एक्जीक्यूटेबल ब्लेंडर फाइल्स एक सिंगल फोल्डर में हैं
जिसे कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में कॉपी किया जा सकता है
अबयदि मैं मेरी मशीन के लिए आर्काइव का उपयोग करना चाहता हूँ मुझे 32 बिट आर्काइव की आवश्यकता है
32 बिट आर्काइव के लिए डाउनलोड लिंक पर बायाँ क्लिक करें और डाउनलोड शुरू करें
जैसा कि मैंने पहले कहा मेरा इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स 309 है
यहाँ दर्शाए गए डाउनलोड के स्टेप्स अन्य सभी इंटरनेट ब्राउजर्स में समान होते हैं
आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड प्रोग्रेस
ग्रीन वर्टिकल स्ट्रिप्स के साथ यह हॉरिजोंटल डाउनलोड बार दर्शाता है कि कितना डाउनलोड हो गया है

डाउनलोड की गति आपके इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करती है
कृपया इसके पूर्ण होने तक इंतजार करें

आर्काइव को एक्जीक्यूट करने के लिए पहले डाउनलोड पर दायाँ क्लिक करें
ओपन कंटेनिंग फोल्डर पर बायाँ क्लिक करें
ज़िप पर बायाँ -डबल क्लिक करें
यह विनजिप जैसा एक आर्काइवर खोलेगा जो किसी भी विंडो मशीन में डिफॉल्ट रूप से संस्थापित होता है
एक्सट्रैक्ट पर बायाँ क्लिक करें सूची से अपना फोल्डर चुनें
मैं माय डॉक्यूमेंट्स में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ
एक्सट्रैक्ट पर बायाँ क्लिक करें
ग्रीन स्ट्रिप के साथ यह प्रोग्रेस बार दर्शाता है कि कितना एक्सट्रैक्शन हो गया है

अब आप अपनी स्क्रीन पर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर देख सकते हैं
फोल्डर को खोलने के लिए बायाँ डबल क्लिक करें
ब्लेंडर एक्जिक्यूटेबल पर बायाँ डबल क्लिक करें
विंडो एक सुरक्षा चेतावनी दर्शाता है थे पब्लिशर कोल्ड नोट बीई वेरिफाइड
इससे परेशान न हों
रुन बटन पर क्लिक करें
अब यदि आप इंस्टॉलर का उपयोग करना चाहते हैं तो ब्लेंडर वेबसाइट पर वापस जाएँ
पेज पर सबसे ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करें
यह हमें वापस डाउनलोड पेज पर ले जाता है
मेरी मशीन के लिए मुझे 32 बिट इंस्टॉलर की आवश्यकता है
अतः मैं 32 बिट इंस्टॉलर के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड शुरू हो जाता है
प्रदर्शन की सरलता के लिए मैंने मेरी मशीन पर ब्लेंडर वेबसाइट से इंस्टॉलर पहले ही डाउनलोड कर दिया है
मैं अब आपको संस्थापन के स्टेप्स बताता हूँ
इंस्टॉलर पर बायाँ डबल क्लिक करें
विंडो सुरक्षा चेतावनी दर्शाता है थे पब्लिशर कोल्ड नोट बीई वेरिफाइड
इससे परेशान न हों
रुन बटन पर क्लिक करें
अतः ब्लेंडर सेटअप विजार्ड इस तरह दिखता है
संस्थापन प्रक्रिया के अगले स्टेप में जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें
अधिकतर सॉफ्टवेयर्स में इंस्टालर लाइसेंस एग्रीमेंट दर्शाता है
बाकी एग्रीमेंट देखने के लिए पेज डाउन करें

मैं आपको इसे पढ़ने की सलाह देता हूँ
ध्यान रखें कि ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है
आपको ब्लेंडर के संस्थापन के लिए इस लाइसेंस एग्रीमेंट को स्वीकर करना होगा
जारी रखने के लिए आई अग्री बटन पर क्लिक करें
यह अगला चरण आपको संस्थापन के लिए घटकों का चुनाव करने की अनुमति देता है
मैं आपको डिफॉल्ट रूप से चयनित सभी घटकों को संस्थापित करने की सलाह देता हूँ
तथा संस्थापन जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
अतः यहाँ आपके पास ब्लेंडर के लिए संस्थापन जगह का चुनाव करने के लिए ऑप्शन है
डिफॉल्ट रूप से प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर चयनित है
जो ब्लेंडर को संस्थापित करने के लिए एक अच्छी जगह है
अतः आगे बढ़ें और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें
ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ यह प्रोग्रेस बार दर्शाता है कि संस्थापन कितना पूरा हुआ है
सामान्यतः यह पूर्ण होने में एक मिनट से भी कम का समय लेता है

यह ब्लेंडर सेटअप को पूर्ण करता है
ब्लेंडर आपकी मशीन पर संस्थापित हो गया है
रुन ब्लेंडर चेकबॉक्स को चयनित रहने दें
फिनिश बटन पर क्लिक करें
ब्लेंडर स्वतः ही रन होगा
पहले से प्रदान ब्लेंडर बाइनरी ऑरिजिनल एक्स्ट्रैक्टेड डाइरेक्टरी में है
ब्लेंडर अतिरिक्त अवलम्बों के बिना बॉक्स के पूर्ण बाहर रन होगा
कोई भी सिस्टम लाइब्रेरी या सिस्टम प्रेफरेंस रूपांतरित नहीं होता
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने ब्लेंडर को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर संस्थापित करना सीखा
अब ब्लेंडर वेबसाइट से ब्लेंडर डाउनलोड़ करने की कोशिश करें और संस्थापित करें और अपनी मशीन पर ब्लेंडर रन करें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
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है oscariitbacइन और spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ई मेल एड्रेस पर सम्पर्क करें contactspoken tutorialorg हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद